जिसमें एक बाइक और एक कार --

यह एक योगा क्लास दिख रहा--

एक रेलवे स्टेशन दिख रहा है।

करते काफी लेडी से नजर आ रही हैं।

जिसमें अलग अलग कलर की उन्होंने--

पैसेंजर आपस में बात करते--

मुझे यहाँ पर एक--

एक कार ऑरेंज कलर की है।

मुझे ये एक जिम --

और दो मास्टर शेफ खड़े नजर आ रहे हैं।

इवेंट डेकोरेटिव काफी दिख रहा है।

हर एक टेबल चेयर के नीचे नाइट लैंप --

जिसमें पैसेंजर बैठे--

जिसमें मुझे ऑटो कार जाते आते--

नजर आ रही है जिसमें--

मुझे ये मॉल के नीचे ग्राउंड की--

पार्किंग नजर आ रही है।

रखी हुई हैं वोकस रखे हुए--

टू व्हीलर पार्किंग में दिख रही हैं।

स्टेज बनाया गया है।

इंडिपेंडेंस डे स्पेशल --

मुझे यहाँ पे फ्लावर --

जिसमें अलग अलग वैरायटी की नॉनवेज --

डिमार्ट वगैरे जाता--

बाहर पार्किंग में टू व्हीलर्स हैं।

क्लियर पानी दिख रहा है।

मुझे यहाँ पे फायर ब्रिगेड --

सबने यूनिफॉर्म पहना हुआ है।

पीछे उन्होंने पार्किंग में रखी है।

से डेकोरेट करता दिख रहा है।

मुझे ये एक टोमेंट्री दिख रही है।

मुझे यहाँ पे सब डिनर --

मुझे यहाँ पे एक छोटा बच्चा--

हाथों की एक्सरसाइज और पैरों की एक्सरसाइज --

मुझे यह एक गुजरात का--

है और बाहर बैनर पे मराठी में पीण्याचा पानी लिखा हुआ दिख रहा है।

जरने का पानी ऊपर से होते--